इस फोटो में बहुत सारा गमले में फूल का पौधा दिखाई दे रहा है जोकि अलग अलग रंग के फूल को दर्शाता है।

एक होद बना हुआ है होद के ऊपर चार से अधिक गमला रखा हुआ है।

इस फोटो में दो बिल्डिंग दिखाई गई है जो अलग अलग रंग से पेंट किया हुआ है।

कुछ जामुने जो गुच्छा में है। तो कुछ अलग अलग भी रखा हुआ है।

उस पार छोटे-छोटे पहाड़ को भी दिखाया गया है।

आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे कपड़े दिख रहे हैं। सब अलग-अलग रंग के कपड़े दिख रहे हैं।

कुछ फ्रॉक है तो कुछ कुर्ती कुर्तियां दिख रही है।

होटल के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से लाइटिंग की गई है होटल के बाहर एक व्यक्ति खड़ा है।

इस फोटो में बहुत सारा भीड़ दिखाया गया है जिसमें कि बूढ़े से लेकर बच्चों तक हर व्यक्ति खड़े हैं और आपस में कोई बात कर रहे हैं तो कोई घूम रहे हैं।

कुर्सी है कुर्सी का ऊपर पानी का एक डब्बा रखा हुआ है।

इस फोटो में एक रोड को दिखाया गया है। रोड के साइड में पैदल वाला रोड जो है उसमें सीमेंट का ईटा का प्रयोग किया गया है ।

काम शुरुआत करने से पहले कुछ पूजा पाठ किया गया है। जिसमें कि दो थाली में लड्डू रखा हुआ है अगरबत्ती जली हुई है ।

दो-दो तकिया है हर एक के ऊपर और बेडशीट भी रखा गया है।